ये बहुत ही खूबसूरत नदी दिख रही है या चारो तरफ नदी के पानी को कुदरत ने हरे कलर से पेंट किया हुआ दिख रहा है एक नाव दिख रही है।

नजारा दिख रहा है यह नजारा के बिच में एक लेडी और जेंट्स अपनी फोटो लेते हुए दिख है चारो तरफ का-काले पथरो के पहाड दिख रहे हैं पहाड़ो में कुछ हरे-भरे छोटे-बड़े घास दिख रहे हैं यहां सूरज की रौशनी ही दिख रही है धन्यवाद।

यह लड़का अपनी हेरस्टयल को निहार रहा है अपनी मनपसंद हेरस्टयल करते हुए है यह दिल से बहुत ही खुश लग रहा है और यह हेयरसलून --

ओर पूरा लोन लाईट से जगमगाया हुआ है यहा हरे- भरे पोधे के गमले लगे हुए है यह लड़का लोन के सामने फोटो खीच रहा है धन्यवाद।